पहाड़ दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहा है।

हैवेल्स का मशीन हैं।

खाते हुए नजर आ रहे हैं और एक आदमी मोबाइल देख रहे हैं आप देख सकते हैं गाड़ी दिखाई दे रहे हैं शीशे के जरिए साइड में और घर दिखाई दे रहे हैं ।